सामने टेंट लगा हुआ है टेंट में लाइट लगी हुई है।

और वॉल पे बहुत सारे पोस्टर टंगे हुए है वॉल पे घड़ी टंगी हुई है।

ऊपर बैनर लगा हुआ है रेड कलर का होंडा सर्विस लिखा हुआ है।

सामने बड़ी सी सड़क दिख रही है पीछे पहाड़ दिख रहा है।

और लाइट खंबे दिख रहे है बिजली के जिसमे वायर एक दूसरे से कनेक्टेड है।

उस पे ब्लू कलर से चाँद लिखा है।

और नीचे बहोत सारे लोहे के रैक में छोटे-छोटे गमले रखे हुए है जिसमे पर पौधे लगे हुए है बगल में एक स्कूटी --

और बहुत सारी गड़िया खड़ी है ब्लैक कलर का पाइप दिख रहा है।

यहाँ सामने मुझे एक ब्लैक कलर का पिंजड़ा दिख रहा है।

अ शेर दूसरी साइड देख रहा है उसकी दो आंखे हैं।

यहाँ सामने गार्डेन दिख रहा है गार्डेन मैं नीचे बहोत सारे हरे-हरे घास हैं ।

अ दिए का स्टैन्ड रखा हुआ है जिसमे दिया जल रहा है।

यहाँ सामने एक बड़ी सी सड़क दिख रही है और सड़क पे --

अ बहुत बड़ा-बड़ा सा ग्राउन्ड बना हुआ है बस को रखने के लिए।

सामने एक बड़ा सा अं मॉल दिख रहा है।

और बहोत सारे रैक बने हुए है रैक में बहोत सारा सामान भरा हुआ है रैक के उपर कार्टून रखे हुए है।

मतलब बड़ी-बड़ी इमारते बनी इमारते दिख रही है नीचे एक ग्रीन कलर का मैट बिछा हुआ है उसपे चप्पल रखी हुई है।

पर एक स्टील के स्टील का स्टॉप बना हुआ है उस पर बैनर लगा हुआ हैं ।

और बहोत सारी कार रखी हुई है फोर विलर एक के पीछे एक रखी हुई है पैड दिख रहा है।

यहाँ और बच्चों के खेलने के लिए झूले लगे हुए है बहुत बच्चे खेल भी रहे है।

बालकनी दिख रही है नीचे फ्लोर पे पानी बिछा है--

यहाँ सामने मुझे एक राउंड दिख रहा है।

अं हॉल दिख रहा है हॉल मे ऊपर बहुत सारे पंखे लगे हुए है।

लाइट्स लगी हुई है और लाइन से बहुत सारी मशीन रखी हुई हैं लोहे की।

उसमे ब बहुत सारी मशीन रखी है पेट्रोल डालने वाली।

फ्लोर पे कुछ पानी बिछा हुआ है गमले रखे हुए है खंबे के पास।

काउन्टर लगा हुआ है काउन्ट के बाहर कुछ लोग खड़े है।

वो कुछ पेड़ डिजाइनर मे पौधे कटे हुए है।

और वो बाउंड्री बनी हुई है लोहे का--

बाउंड्री बना हुआ हैं एक रिक्शा रखा हुआ हैं रिक्शे पे आदमी सो रहा हैं ।

ग्राउन्ड मे साइकिल रखी हुई है और एक ठेला रखा हुआ है।

यहाँ सामने मुझे एक रूम दिख रहा हैं रूम में नीचे एक बेड लगा हुआ--

सामने विंडो दिख रहा है ऑरेंज कलर का कर्टेन लगा हुआ है।

यहाँ सामने मुझे सड़क दिख रही है।

बाइक खड़ी है बाइक पे एक लड़का है।

बैठने के लिए सीट बना रखा हुआ है।

और ऑरेंज और और पीले रंग के--

ये दुकान दिख रहा है दुकान मे लकड़ी के रैक बने हुए है।

आशन मे भगवान जी के पोस्टर रखे हुए है।

सामने मुझे मंदिर दिख रहा है मंदिर का गेट दिख रहा है।

ऊपर मोर बना हुआ है मंदिर में--

यहाँ सामने मुझे बहुत बड़ा सा गार्डेन दिख रहा है।

और झूले लगे हुए है बच्चों के स्लाइडिंग के लिए कलरफुल ।

बिल्डिंग के ऊपर बैनर टंगा हुआ है ब्लू रंग का जिसपे एच_डी_एफ_सी बैंक लिखा है।

हॉल मे चेयर रखी हुई है टैक्स रखा हुआ है ।

सामने मुझे एक सड़क दिख रही है बड़ा सा शोरूम दिख रहा है।

और ऊपर बैनर लगा हुआ हैं कांच के मिरर लगे है गेट भी कांच का हैं ।

लोहे के चैनल दिख रही है शटर लगा हुआ है और बहोत सारे लोग अंदर--

यहाँ सामने मुझे बहुत सारी टायर दिख रही है।

पार्टीशन किया हुआ है व्हाइट कलर के चुने लगे है।

यहां सामने मुझे बहुत बड़ा सा नदी दिख रहा है नदी में पानी है।

प्लास्टिक का येलो रंग का और साईड - साईड में छोटे-छोटे पौधे हैं।